तस्वीर में हमे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है जिसमे यहाँ पे एक रोड नज़र आ रहा है जो ब्लैक कलर का है इसमें व्हाइट कलर की पट्ट--

यहाँ पे अअअ व्हाइट कलर का एक अलग एक या दूसरा मकान दिखाई दे रहा है उसमें रेड कलर की इट से अभी कार्य चल रहा है यहाँ पे येलो कलर का एक बॉक्स रखा हुआ है बॉक्स के अलावा--

इस तस्वीर मे मार्केट दिखाई दे रहा हैं मार्केट मे यहाँ पे एक ई रिकसा दिखाई दे रहा है इ रिकसा ग्रीन कलर का है और उसका छत स्काइ ब्लू कलर का है।

यहाँ पे ये और सफ्रोन कलर का वाइट कलर का और ग्रीन कलर का फ्लैग लगा हुआ हैं यहाँ पे--

और इसने गले मे एक चैन पहना हुआ हैं धागे वाला और उसने गोल्डन कलर का लोकैट हैं पीछे एक दूसरा लड़का हैं इसने ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हैं ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

पीछे यहाँ पे पेंड़े लगे हुए है और यहां पे ये एक टिलर टाइप बना हुआ है और यहाँ पे